और टेबल के ऊपर बहुत सारी फुल के येथी रखे फ्लावर पॉट रखी हुई है यहां पर एक ए_सी और पंखा भी है।

यहा पर बहोत सारे मिट्टी और बालू और हैं और यहा पर बहुत सारी पत्थरे फेकी हुई हैं।

और यहां पर बहुत सारे पोल्स हैं यहां पर बहुत सारे झंडे लगाए हुए हैं यहां पर बहुत सारी लाइटें लगाई हुई हैं।

नीचे में एक ब्लैक की कलर की कार्पेट रखी हुई है।

कुर्सियां काले रंग की है और यहां नीचे में बहुत सारे टाइल्से बिछाई हुई है।

एक बहुत बड़ा गार्डन का फोटो है यहां पर एक स्टेच्यू है लड़के लड़की का।

यहां पर बहुत पीछे में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है यहां पर बहुत सारे आदमी और औरते हैं।

एंड इसका कलर उजला ब्लू और पिंक है यहां पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

यहां पर एक टे काउंटर रखा हुआ है जिसका कलर भूरा है।

एक बहुत बड़ा खेत का फोटो है यहां पर बहुत सारी बेंचे लगी हुई है।

यहा पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है। यहा पर गमलो का कलर काला है।

एक बहुत बड़े पार्क का फोटो है यहां पर एक बोर्ड बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है ईयर ऑफ एस_टी जॉनस्ट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

यहां पर स्टेज में एक बहोत बड़ा चेयर लगा हुआ है सोफा लगा हुआ है और यहां पर बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़े दुकान का फोटो है।

यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है यहाँ पर अंदर मे बहुत सारी बाइकें है।

यहां पर एक चेयर भी है यहां पर चेयर का कलर लाल है।

यहां पर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट में बहुत सारी डिज़ाइने बनाई हुई है।

इसका कलर लाल और ब्ल्यू है और यहां पर बहुत सारी रोटियां रखी हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे करकटे हैं। यहां पर बहुत सारे यहां पर बहुत सारी बाइके हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा सोलर पैनल भी है।